गॉवर्मेंट टीआरटीएस आउट एंड एससीआईएनसीए साइंस कॉलेज और उसके बाहर--

इस इमेज में मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी मिट्टी दिखाई दे रही हैं ऊपर और गुड़ --

अअअ जो एक लाल कलर के है एक मेरून कलर के है दो--

वाइट वाइट पीटटी की बनी हुई हैं खम्बा दिखाई दे रहा हैं और तार दिखाई दे रहै हैं।

एक शटर लगी हुई हैं उसमे प्रो रामनाथ एक हवाने लौण्डे लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं और एक आगा लगा हुआ हैं आजू-बाजू लिखा हुआ हैं।

कैसे हे हैं मुझे एक पहाड़े दिखाई दे रही हैं पहाड़े के थोड़े आगे का एक मूर्ति सी बनी दिखाई दे रही हैं मूर्ति--

बनी हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और एक पहाड़ी दिखाई दे रही हैं।

रेड और ब्लैक कलर की कुर्सिया है और लाइट जला हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बॉउंड्री दिखाई दे रही है और अन्दर एक अम्म्ममममम अन्दर कपड़ा सा टांगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे--

साबुन रखी हुई दिखाई दे रहे हैं मंजन रखा हुआ दिखाई दे रहा है तेल रखा हुआ दिखाई--

इस इमेज में मुझे एक इमेज मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है एफ_ऐ_एस_टी फ़ास्ट एफ_डबल_ओ_डी फ़ूड फ़ास्ट फ़ूड जे_यु_एन_सी_टी_आई_ओ_एन जंक्शन उसके अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है दुकान के अंदर बहुत सारा--